ये यहां पे देख सकते हो ये गो--

ये यहां पे देख सकते हो ये औरत है।

शिवा लिखा हुआ है और ये यहां पे--

ये यहां पे वो सामान दिख रहा है।

आदमी ने खड़े हुए हैं और ये यहां पे देख सकते हो ये यहां पे --

ये यहां पे लाइट वगैराह भी दिख रह--

ये यहां पे देख सकते हो आसमान दिख रहा--